सामने नदी है और उसके ऊपर पहाड़ी के उसके ऊपर बोहोत सारे पेड़ पोधे लगे हुए है वही से एक रास्ता गया हुआ है उसके सामने नदी है ओर--

वो जो होटल दिख रही है उसका नेम है होटल पॅरलस और जो सामने उसकी बाइक खड़ी है और उसके साइड मे मे है स्नैक के स्नैच है और जो भी बहोत अच्छा लग रहा है।

हमको जो जगह दिख रही है वो है प्रेस्टंट डिपार्टमेंट उसके सामने कुछ अ अ छोटे-छोटे प्लांट लगे है।